मुझे इस चित्र में एक दुकान दिखाई दे रहा हैं।

सात लड़के फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक बड़ा मैदान नजर आ रहा है।

इस दुकान पर लिखा हुआ है सीएट एम_आर_एफ अपोलो ।